इसके अलावा मार्किट की फोटो लगी हुई है जिसमे मार्किट में फिश मिलती है।

ये वाइट कलर के और ऊपर की साइड दो जुमर भी लटके हुए है।

यह एक रोड की फोटो दिखाई देरी हैं।

और जिसमे एक ऑटो भी ऑटो रिक्शा खड़ा है।

ऊपर की साइड लेंटर लगा हुआ हैं नीचे की साइड पिलर लगे रखे हैं और लेंटर को रोकने के लिए की की वहाँ पे सुख जाए लेंटर --

काफी सारे पिल्लर्स हैं जो की लेंत्र को रोकने के लिए काम आ रहे हैं।

एंड उसके पीछे देखेगे तो आप एक कैपिंग भी दिखाई देगा आपको --

सामने कि साइड बाउंड्री भी दिखाई दे रही है।

पीछे की साइड काफी सारी दवाईया भी रखी हुई हैं।

यह पे एक नर्स भी हैं जो की फेस कवर रखा हैं जिन्होंने--

काफी सारे पिंक कलर के बलुंस भी लगे हुए हे ऊपर की साइड केमरा भी हैं।

यहा पे एक जिनकी फोटो हे जिस पर एक --

ओ ग्रीन कलर का कारपेट है जहां पे दो बंदे खड़े हैं।

यह अंदर की साइड देखेंगे तो मिल्क के कंटेनर भी दिखाई दे रही ह--

साइड में दूकान वाले के मोबइल नंबर भी लगे हुए हैं।

या पे आप देख पा रहे हे एक होल दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की साइड देखेंगे तो काफी सारी लाइटे भी दिखाई देंगी एंड कप कोई एक--

एय ऐसा देख पा रहे हे की लोग यहा पे गुमने के लिए यहा पे आय हैं।

काफी सारी बाईके दिखाई दे रही हे रोड क्लियर शो र हे आपको --

ओ एंड ओ_डी_ए थ्री दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक कपड़ो की दूकान दिखाई दे रही है जिसमे कपड़ो की काफी साड़ी बॉक्सेस भी दिखाई दे रहे है।

यहा बन्दर का भी बच्चा दिखाई दे रहा हैं यहा का --

आप लास्ट में देखेगे तो आपको दो गाड़िया भी खड़ी दिखाई देगी।

बट सामने झोंपड़ी भी लगी हुई हे यहा पर एक --

अ टाइलो का फ़र्स दिखाई दे रहा हे इंट्रेंस गेट भी दिखाई दे रहा हैं।

गुरु हराई सा पोताईगोनिस्टीक सेंटर भी लिखा हुआ हैं यहा पे --

इस फोटो में अब देख पा रहे की दो बच्चियाँ खड़ी हे पीछे की साइड --

एक कारपेट भी दिखाई देरी हे यहाँ पे --

ऊपर की साइड दिखेंगे पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे आपको --

यह एक केन्द्रीय विद्यालय की गेट की फोटो है।

टाइले देख पा रहे हैं काफी साफ दिखाई दे रही है।

इसमें काफी सारी टेब्बल चेयर लगे हुईं हैं।

सामने मेन्यु चार्ट लगा रखा है वाइट कलर का फर्श भी है यहाँ --

अ गेट के बाहर दो गमले लगे हुए हैं जिस पे काफी सुन्दर--

एंड रेड कलर का कोप अ पर्स भी दिखाई दे रहा हे यहाँ पे --

पीछे की साइड वाइट कलर की लाइटें भी काफी सुन्दर दिखाई दे रही है बहोत सारी लाइटे लगा --

एंड आप कारपेट भी देख पा रहे है वाइट कलर की ड्राइंग लगी हुई है कारपेट पे --

हुम्म जैसे कि देख पा रहे हैं एक गाड़ी खड़ी है जिसका टायर निकाल रखा है।

जिस पे एक रोड जा रा है जहां पे टाइल वगैरह कुछ नहीं लगे हैं मिट्टी का रोड है।

ठीक इस साइड भी बहोत पेड़ लगे हुए है एंड एक ट्रैक्टर टाइप कुछ खड़ा है ।

यह एक सिम की केयर दिखाई दे रहा है।

यह किसी शोरुम की फोटो दिखाई दे रही हे जहाँ पे गाडियों की सर्विस की जा --

यहाँ पे रेड कलर का पेंट हो रखे है।

चिकी साइड काफी सारे काफी देशो के झंडे लगे हुए हैं।

काफी सारी बाईके खड़ी है जिनके नंबर एल_पी से शुरू हो रहे हैं।

सामने की साइड काफी सारे सीसे लग हुए हैं।

ग्रीन कलर की टी शर्ट भी पहनी हुई है।

ठीक इस साइड पेड़ भी लगे हुए हैं काफी सारे --

वहाँ पर काफी पेड़ देख पा रहे हैं।